जहां पर लोग अपना अपना सामान खिदने आये हुए हैं।

विद्यालय पर सफ़ेद रंग का पेंट हुआ है।

कुछ कुर्सियां खाली तथा कुछ कुर्सियों पर लोग बैठे हुए हैं।

यह एक मंच का दृश्य दिखाई दे रहा है।